और यहाँ पे एक आदमी है जो खरीदने के लिए तैयार है और वह वो मछली को उठाके व्यापारी को शायद देने वाले हैं ऐसा महसूस हो रहा है।

जो एक वॉच पहने हुए है वो किसी तरफ देख रहा है और अब जो उसका तस्वीर वो देख रहा किसी तरफ किसी को लग रहा है ऐसा की देख रहा है एक भाई और उसके पीछे जो भी किसी को देख रहा है शायद आपस में बात भी कर --

यहां पे ऐसा लग रहा है यहां पे कुछ सरकारी कार्यालय उरर्यालय है जो यहाँ पे बगीचे और कुछ आदमी यहाँ पे आए हुए शायद काम से उनका बैग बाहर में लगा हुआ है।

ये भी जीम क्लास है यहां पर एक सेट - सेट को पकड़े हुए एक भाई जो-जो मोबाइल से अपने तस्वीर ले रहे है।

टीन द्वारा वजन जो जो मशीन के ऊपर में वजन नजर आ रहा है और एक आदमी उस मशीन की वजन की तरफ देख भी रहा है और कुछ आदमी बैठे हुए है और कुछ आदमी ऊपर में भी काम कर रहे।

और इधर-उधर आदमी घूम भी रहे हैं पीछे में चारों तरफ से बाऊ--

हस्त कलाकार का ही इसको लग रहा है जैसे कि सभी बच्चे और दस बच्चे बेंच पे बैठे हुए लग रहा है कि एक बच्चे ने गुलदस्ते बनाए हुए है।

यहां पे अ सभी महिलाएं लोग जो घर के बाहर खड़े हुए दरवाजे आंगन में खड़े है और सभी लोग अपने हाथ को उठाके योगा कर रहे है औ और जमीन पे एक लाल अथी--

यहाँ पे जिओ के साथ कुछ है कंपनी वगेरा अंदर मे एस_बी_आई बैंक भी शायद है और वहाँ पे आदमी लोग सभी आदमी अंदर जा रहे है प्रवेश कर रहे हैं और अपने गाड़ी को पार्क में करके अंदर जाएंगे ।

व सभी लोग अपने तस्वीर घिचाने के लिए लाइन खड़े हुए हैं और पीछे में कुछ सजाया गया जिसमें लाइट आधुनिक डिजाइन की लाइट लगाया गया जिससे वह सुंदर दी --

पे एक औरतों के क्लास में चारों तरफ से डेक्स लगे चारो कते बच्चे बैठे हुए और क्लास के बीच में एक ब बलिका हे।

और उनके जो कंपाउंडर हैं उनके सामने पंखा ए_सी वगैरे लगाया हुआ जैसे इ लग रहा है की डॉक्टर का --